और यहाँ पर जो कलर किया गया है बोहोत ही सुंदर लग रहा है। अलग अलग कलर हैं। बोहोत ही सुंदर नजारा है।

यहां पर व्हाइट कलर का पेंट किया गया है और यहां पर बोहोत ही सुंदर नजारा दिख रहा है।